सामने जो हम देख रहे हैं। वह एक स्टेशन का दृश्य है। सम्राट टाउन का और यह टाउन एक स्टेशन के बगल पे स्थित है।

ये काफी सुंदर लग रहा है और ये केक भी काफी सुंदर और काफी देखने में यहाँ बहोत तरह के खाद्यय पदार्थ है।

गोपाल जी ऑटो सर्विस यही नाम है इस छोटा है पर दुकान में काफी माल --

ऑरेंज रंग बाहर दो गाड़ी हम देख सकते हैं दो गाड़ी खड़े हैं और साईड में एक आदमी खाना पका रहा है।